बहुत ऊपर तक बड़ी हुई है क्योंकि यहां से देख सकते हैं गांव कुछ भी गए है आप देख सकते हैं।

जैसे कि आप देख सकते हैं ये शादी का माहौल है एक ही तरह अंदर जाने के लिए गेट है। गेस्ट हाउस की सीन है कि देख सकते हैं यहां पे गार्ड की ड्यूटी भी है तो कुछ लोग जो आए --

फोटो लेके उधर खींच रहे हैं देख सकते हैं की तेल के कीप रखे हुए हैं जिससे पता लगा सकते हैं कि तेल की कंपनी है।

देख सकते हैं। पेड़ पौधे है इनमे से बड़े यह जो बलून है बहुत अच्छे तरिके से सजाया गया हैं आप देख सकते हैं यहां पर ऑफिस है। यहाँ पर बहुत अच्छे तरिके से बलून सजाया गया है की।

जैसे कि आप देख सकते हैं गायस ये जमुना के जो किनारे से वहां से फोटो क्लिक की गयी है और यहाँ से जो नजारा हैं बोहोत ही सुन्दर दिखाई लग रहा हैं जो नीचे से देखेंगे तोह बढ़िया पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं जो बोहोत ही अच्छे तरीके से --